यहाँ पे पानी काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है पानी काफी साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ पेड़ नजर आ रहे है पेड़ मे पत्तिया दिखाई दे रही है पत्तिया हरी कलर की दिखाई दे रही है यहाँ पे पात्थर काफि बड़े नजर आ रहे है।

नजर आ रही है जिम काफी बड़ी दिखाई दे रही है जिम मे काफी सारा सामान नजर आ रहा है जिम मे काफी सारी मशीने नजर आ रही है जिम मे कई प्रकार --

दिखाई दे रहा है। हॉल मे काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है। यहा पे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे है। यहा पे काफी सारी लाइट नजर आ रही है। यहा पे कुछ सिरीज़ --